और आगे पे ही एक घर दिखाई दे रहा है जो की नीले कलर का है।

कि लोग है जो कि यहां पर घूमने आए हैं दो व्य दो लड़की है जो की फोटो खींच रहे हैं और कुछ लोग बातें कर रहे हैं।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

इस पिक्चर पर हमें एक तालाब दिखाया गया है जो की काफी खूबसूरत लग रहा है काफी क्लीन है इतना गहरा भी नहीं है।

मौसम काफी सुहाना है। ज्यादा बादल नहीं है काफी धूप लग रहा है।

और यह रूम का जो छत है वह सफेद कलर का है।

काफी अच्छी डेकोरेशन की गई है काफी सारे पत्ते लगाए गए हैं अंदर पर।

सभी व सभी लोग काम कर रहे है अच्छे से।

इस पिक्चर पे हमें एक अ टेबल दिखाई दिया जा रहा है एक सोफा भी दिखाई दिया जा रहा है और इस रूम के अगल बगल काफी सारे पिक्चर लगे हुए हैं।

कुर्ती भी है और इस पिक्चर पे हमें एक अ पानी पीने का फिल्टर भी दिखाई दिया जा रहा है जो की रोड पे लगाया हुआ है।

पिक्चर पे हमें एक वॉल दिखाई दिया जा रहा है जिस पे कोई पेंट वेंट नहीं किया गया है।

इस वॉल के अगल बगल काफी सारे छोटे छोटे ग्रासेस है जो की काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

इस दुकान का रंग नीला कलर का है।

पुल के अगल बगल काफी सारे ग्रास है काफी हरियाली दिख रही है और पुल के उस तरफ एक दो घर है जो कि बंबू से बने हैं।

और सभी व्यक्ति एक व्यक्ति के ओर देखकर बाते कर रहे हैं।

वह बुक का नाम है एवरी मैन वॉर ।

यह पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह एक डेम है जिस पे पानी छोड़ा जा रहा है।

और नीचे जाकर पानी कलेक्ट हो रहा है।

कुछ महिला अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं कुछ लड़के अपने बाइक को लेकर जा रहे हैं।

इस पिक्चर पर काफी सारी सब्जियां दिखाई दिखाइ दे रही है जैसे की फूलगोभी गाजर टमाटर गोभी।

और काफी यह पक्षी किसी अ जंगल के ऊपर चल रहा है छोटे छोटे पेड़ पौधे के ऊपर जो की काफी खूबसूरत लग रहा है।

इस पिक्चर पर हमें एक तालाब दिखाया गया है जोकि पूरा नीला लग रहा है।